प्रस्तुत तस्वीर में हमें एक चार मंजिला मकान दिख रहा है।

अभी अभी जन्मा है और चलना नहीं सीखा है।

और सामने एक फ़ूड ट्रैक करके दुकान है।

इन दिस फोटो वी कैन सी आ हूग टेम्पल --